पीछे एक चेयर भी है काले रंग की तौलिया है लाल रंग का।

इस तस्वीर में एक मछली का दुकान है सामने में एक थर्माकोल का डब्बा रखा हुआ कुछ मछली वगैरा रखी हुई है नीचे में कुछ पानियां वगैरह गिरी हुई है।

कुछ लोग मैट में टैल अ योगा कर रहे है सबने मास्क लगाई हुई है और तिरंगे ले झंडे लगाए हुए है पीछे पेड़े वगैरा --

कुछ लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। बाइके वगेरा लगे हुई हैं। पेड़े वगेरा भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में पोस्ट फिस हैजिमे वाग ता घर लिखा हुआ है।

सामने में एक लेटर बॉक्स भी लगा हुआ है दो चप्पल भी रखे हुए है अन्दर में दो बोरिया दिख रही है।

कुछ लोग खड़े कुछ लोग निचे खड़े हुए हैं। ऊपर मे फेने वगेरा लगी हुई बगल मे लाइटे वगेरा लगी हुई। ऐसी भी लगा हुआ है।

और लाइटे वगेरा लगी हुई हैं। बगल में स्टॉल लगा हुआ है खाने पीने का। सामने एक दरवाजा है।